ईंट की दीवार भी दिख रही है।

छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं और यहां पे शावर दिख रहा है लाइट्स भी दिख रही हैं।

यहां पे ट्रक दिख रहा है और यहां एक आदमी दिख रहा है जो मैकेनिक का काम कर रहा है।

यहां पे शॉप दिख रही है शॉप पे बहुत सारी बाल्टियां दिख रही है एक वेटिंग मशीन दिख रही है।

ओ यहां पे तेल की बोटल्स दिख रही है।

जैसे बैग दिख रहा है वॉटर बॉटल दिख रही है।

बिजली की तारे दिख रही हैं और बिल्डिंग भी दिख रही हैं बहोत सारी गाड़ियां दिख रही हैं साइड में छोटे छोटे--

फट्टे भी दिख रहे हैं और फर्श भी दिख रहा है फर्श में टॉवेल दिख रहा है।

ऊपर शीशा लगा हुआ है एक सफेद बॉटल दिख रही है।

शॉप के ऊपर बैनर दिख रहे हैं।

यह एक हॉल दिख रहा है।